हेलो गाइज दोस्तो जैसा कि आप यहां पर देख-- यहां पे एक बहुत बड़ा सा समुद्र टाइप का बना--

हैलो गाइज जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको एक कैफे बना हुआ दिखाई दे रहा है। दो लड़कियां है।

हेलो गाइज जैसा की आपको यहां पे एक सैलून दिखाई दे रहा है।

हेलो गाईज़ जैसा की आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे में है जो आप पे आपको जो आपको जो है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा--